और कॉममिक्स बुक्स भी रखी हुई है।

लोग यहाँ पढने भी आते हैं। ये एक लाइब्रेरी है।

यहाँ पर हमें एक पार्क दीखाया गया है जहाँ पर थ्री सीट पड़ी हुई हैं।

जिसपे एक कपड़ा चढाया गया है और सोफे वगेरा रखे हुए हैं।

और मैंडम इन्हे ड्राइंग व का पीरियड लगा हुआ है इनका।

और यहाँ पर एक मोमबत्ती और एक अगरबत्ती हर में लगायी गइ हैं।

जिसमे खम्बे वगेरा भी लगे हुए है और लोग चल रहे हैं।

और पानी भी एक दम शुद्ध है नीला।